पेड़ भी दिखाई दे रहे है और बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे है और काले काले पहाड़ भी दिखाई दे रहे है काला बादल भी दिखाई दे ऊपर से पत्ती की ढाली भी दिख रही है और यहां पे छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई हरी पेड़ भी दिखाई और पहाड़ भी दिखाई दे रहे है ]

पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ के पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे है भई यहां पर नीले कलर का बदल दिखाई दे रहा है।

हरे हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे है छोटे छोटे पेड़ भी दिखाईबड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है सफेद बादल भी दिखाई दे रहे है और कुछ खिल खिलौना भी देखाई दे रहे।

दो बत्तखे दिखाई दे रही है कुछ खा रह है यंहा कीड़ा मकोड़ा खा रहिए यहां पर बोहोत अच्छा लग रहा है।

यहां पे अच्छे स्टेज भी सजा हुआ है जो रेड चटाई बिछी हुई है यहां पे अच्छे रेड कलर मे बगल से भी लगा हुआ है पीले कलर का अच्छे फूले भी लगे हुए है जैसे रेड कलर के भी लगे है पीले कलर के भी लगे है और वाइट कलर के भी लगे है।

ढोलक भी टंगाया हुआ है यहाँ पे नगाड़े वाला ढोल भी टँगाया है यहाँ पे थाली भी धयी है बोहत सारी चीज भी धरी है हेलमेट भी धरा है काली कलर का हेलमेट हैं।